आस पास कुछ पोस्टर लगाए गए हैं और यहां--

सामने कुछ तेल की बोतले रखी गई है।

बेंच के ऊपर कुछ समान रखा हुआ हैं सामने एक कांच का शीशा लगा हुआ हैं।

यहां पर सामने एक कपड़ों की दुकान--

एक मंदिर है और मंदिर को सजाया गया है और यहां पर --